और ये इधर कुछ टोल वगैरह लगे हैं।

और कुछ पेड़ भी हैं आसपास नीचे हरी घास भी है।

ये कोई डांस प्रोग्राम टाइप लग रहा है ऐसे?--

में कुछ होता न हो लेकिन यह कुछ कबाड़ टाइप का पड़ा है पत्थर वगैरह कुछ बिजली के खंभे दिख रहे हैं इसमें--

एक दो बंदे भी दिख रहे हैं सामने उसके और--

एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ नौ बंदे दिख रहे हैं यहां पे दस ग्यारह बंदे दिख रहे हैं यहां पे--

ऊपर सिल्वर टाइप के कुछ बलून टाइप के कुछ लगे हैं ।

ये एक दो तीन चार पांच पांच अ--

इंग्लिश कुछ लिखा हुआ है एक बिल्डिंग टाइप की है।

ऐसा लगता है कोई पेंटिंग टाइप --

ये कोई मज्जीद टाइप दिख रही है यह मदरसा होगा या मस्जिद होगी।

ऐसा लगता है ये केरल का होगा।

इसमें कुछ लाइट लगी हुई है तीन ब्लब सामने दिख रहे हैं कुछ छोटे वाले बल्ब लगे हुए हैं।

इसमें क्या चीज खड़ी है है है है --

पीछे मस्जिद टाइप लग रही है और ये ऐसा गेट ही उसका कुछ शेप ऐसा आएगा कि इस्लामिक जगह हो ।

और पीछे से लगता है कुछ पत्थर वगैरह पड़े हो।

ये लगभग ऐसा लग रहा है मुझे कश्मीर का हो।

ऑटो ऐसे लगता है इनने अभी खरीदा होगा।

इसमें कुछ लगे हुए है। ऊपर हरी नेट बंधी हुई है। सामने पानी की बोतल रखी है। कुछ रंग बिरंगे फूल है।

और ये नर्सरी टाइप की लग रही है मुझे नर्सरी है।

स्कूटी खड़ी है एक नीले कलर की और पीछे कुछ मकान टाइप का दिख रहा है और ऐसा लगता है ये कोई मंडी है सब्ज़ी मंडी --